यहां पर वो रैम भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

यहां पर बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है खिड़कियों में शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे--

और बहुत सारी लाइटिंग लिकाई दिखाई दे रही है।